काले हैं और घर की चिमनी धुआँ बहोत दे रही हैं।

इस वीडियो कुछ लोग कुंग फु की ड्रेस पहन के अपनी योगा कर रहे हैं।

पर्दा लगा हुआ रेड कलर का। रेड कलर के पर्दे के पीछे गेट लगा हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट कोचिंग पढ़ने आते हैं। कंप्यूटर क्लासेज ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे आ --

इस कमरे में बोहोत सेलोग बैठे हुए हैं उनके सामने एक लोग स्पीच दे रहे हैं मंच पे खड़े होके।

और स्टेज पे बढ़िया से सजावट की गयी है। गद्दे वद्दे बगैरह बिछाये गए है और फूल वगैरह भी लगाए गए हैं।

यहाँ पे कुछ गाय भैंस कौआ चील ये सब बने हुए हैं।

यह एक बस-स्टैंड है। यहाँ पे एक डिपो खड़ी हुई है। यहाँ पे कई लोग भी खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक लड़का हुआ जाता दिख रहा है।

यह एक बड़ा सा कॉलेज है। कॉलेज के बाहर के कुछ स्टूडेंट जाते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट के जस्ट पीछे एक प्रवेश निषेध है।

और बहुत प्यारी मूर्ति लग रही है और इसके पीछे बढ़िया से डिज़ाइनिंग वाले कारपेट भी चिपके हुए हैं।

यहाँ पे छोटे बच्चे भी मार्केट देख रहे है यहाँ से बाइक वगैरह भी गुजरती है यह सड़क पे बहुत से वाहन चलते है यहाँ पे एक अंकल जी साइकिल लेके जा रहे हैं।

इस कमरे के अंदर वाशिंग मशीन बगैरा रखी हुई है। लाइट वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और यहाँ पे एक काउंटर रखा हुआ है।